इस तालाब के बीच मे हरे-भरे पेड़ हरे-भरे पौधे हरे-भरे झाड़ आजू-बाजु में खूबसूरत पहाड़ --

बाम्बू और लकड़ी क खम्भे और उम खम् से यह आकार देखके यह की तैयारी की जा रही है।